जिसका रंग सफेद और काला है उसके बराबर में भी एक कार है।

इस इमेज में बहोत से टेयरों को जमीन में गाड़ा गया है यहां पर एक साइकिल और एक मोटरसाइकिल खड़ी हुई है।

इस इमेज में एक टीचर और बहुत से बच्चे है।

जिसके नीचे बहोत सी कुर्सियां भी रखी हुई है जिनका रंग लाल है।

लाल और सफेद है और क्वाड पर पोस्टर भी लगे हुए हैं।

ढाबे पर ढाबे के नाम प्लेट लगी हुई है।

मजदूरों ने शर्ट और पैंट पहनी हुई है।

सामने एक शीशा भी है।

बाहर बहुत से पेड़ पौधे भी हैं।

और दीवाल हुआ रंग सफेद कलर का है।

इस इमेज में एक आदमी कम्पूटर को चला रहा है वह एक कुर्सी पर बैठा हुआ है उसके पीछे एक सोफा है।

यहां पर बहोत सी मेजे और बहोत सी कुर्सियां रखी हुई है।

कुछ कुर्सियों का रंग काला और कुछ का रंग चॉकलेटी है।

काउंटर के आगे मिठाइयों की एक फोटो भी छपी हुई है।

के बाहर दो आदमी खड़े हुए हैं।

इसमें बहोत सा सामान रखा हुआ है टावर में एक सीढ़ी रखी हुई है ऊपर बोर्ड भी लगा हुआ है।

यह इमेज योगा करते हुए लेडीज का है।

यह इमेज एक लाइब्रेरी का है।

साइड से अनेक मेम्बर जा रहे हैं।

और मेल ने कुर्ता धोती पहना हुआ है।

इनपर लाल और काले कलर के गुब्बारे लगे हुए हैं पीछे एक पोस्टर है जिस पर ए के फिटनेस जिम फर्स्ट एनिवर्सरी सेलिब्रेशन लिखा हुआ है।

पेड़ों पर बहुत हल्के पत्ते आए हुए हैं।

दोनों एनिमल के आगे घास र गिरा हुआ है।

दीवारो पर प्लास्तर किया हुआ है।

ऊपर लोहे के पाइपों पर चादर टिकी हुई है।

दीवारों पर बॉडी बिल्डर के फोटो लगे हुए हैं।

जिनपे से एक पर लिखा है बिन्दर और दूसरी पर लिखा है हैप्पी ।

यहां पर अरबी के पेड़ भी लगे हुए हैं।

बंद गोभियों के बीच यहां पर बहोत सा घास भी है।

दुकान पर कांच के दरवाजे है जिन पर पिक्चर छपी हुई है।

घर के बाहर दो आदमी है एक बाईक के पास खड़ा हुआ है जिस बाईक का कलर काला है।

और एक इस गेट की तरफ खड़ा है।

इस इमेज में बहुत से सूट गलीचे और स्तर रखे हुए है।

सामने दो दराज है जिनका रंग सफेद है।